सामने एक बड़ा सा बंगलो है इस बंगलो के अंदर एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है की अंदर बहुत से कलर कलर के फ्लावर है।